मुझे यहाँ पर एक घर दिख रहा है।

मुझे यहाँ पर एक दुकान दिख रहा है मुझे यहाँ पर पोस्टर भी दिखाइए मुझे यहाँ पर-- ]

मुझे यहाँ पर पर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पता दिख रही मुझे यहाँ पर मीटर दिख रहा है मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है।

मुझे यहाँ पूरा दुकान दिख रही है।